यहां कुछ सोफे एवम कांच की इमेज और कुर्सी लगी हुई है।

यहां बहुत सारे बल्ब जल रहे हैं।

यहां बहुत सारी चट्टानें भी दिख रही है।

यहां तीन नई नई गाड़ियां रखी हुई है।

यह एक रैक बना हुआ हैं जिसपर टाइल्स लगी हुई है।

यहां लोहे की खूंटे गड़े हुए हैं।

जहां एक पोस्टर लगाया गया है।

यहां बांस से बनी एक सीढ़ियां है।

यहां गमले में कुछ पौधे लगे हुए हैं।

यहां कुछ कुर्सियाँ भी लगाई गई है।

यह एक होटल का तस्वीर लग रहा है।

यह एक बड़ा दुकान दिखाई दे रहा है यहां बहुत सारे रैक बने हुए हैं।

यहां एक बहुत बड़ा मैदान है जिन पर घास उगी हुई हैं।

इसे चारों ओर से बाउंड्री किया गया है।

यहां बहुत सारे पोस्टर भी लगे हुए हैं।

यहां एक रास्ता बना हुआ है जिनमें बहुत सारी बसे एवं ऑटो दिख रही है।

यहां कुछ गाड़ियां खड़ी हुई है।

यहां कुछ लोग भी मौजूद हैं यहां एक टेबल और कुछ कुर्सियां भी लगाई गई है।

यहां एक गाड़ी पार्क किया गया है।

पानी भरा हुआ है यहां एक इंसान दिख रहा है।

यहां बहुत बड़ा खेल का मैदान है जिसमें घास उगी हुई है।

यहां कुछ मकाने बनी हुए दिख रही है।

यह एक बहुत सुंदर केक बनाया गया है।

जिसकी छत की ढलाई की गई है।

यहां लोहे की खिड़कियां बनी हुई है यहां कुछ कुर्सियां भी रखी गई है।

यह एक ऑफिस का दृश्य दिखाई दे रहा है।

यहां लोहे के कुछ रैक बने हुए हैं जिसमें किताबें रखी हुई है।

इसमें कुछ लड़कियां नृत्य सीख रही है।

यहां एक रास्ता निकला हुआ है।

यहां आसमान में कुछ बादल भी छाए हुए है।